फोटो की चारों तरफ जो वॉल है उसको ब्लैक कलर से कलर किया गया है।

फोटो में एक बड़ा सा जहाज दिखाई दे रहा है।

नदी के किनारे की मिट्टी में कई सारे पत्थर है।

फोटो में दिखाए गए बाजार में कई प्रकार के दुकाने हैं।

यह फोटो एक बड़े से घर के सामने से खींची गई है।

फोटो में रहने वाले मुर्गे कुछ खा रहे हैं।

ये फोटो एक फुटबॉल स्टेडियम से खींचा गया है।

फोटो में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो की ग्लास से बना हुआ है।

इस फोटो को दिन के समय में खींचा गया था।

इस फोटो को दिन के समय में खींचा गया था।

इस फोटो को दिन के समय में खींचा गया था।

फोटो में जो चर्च है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है।

ये फोटो दो बिल्डिंग के पास से खींची गई थी।